वार्डन है जो बुक्स की रखवाली कर रहा है।

यहां पर हमें दुकानदार एक ग्राहक को किताबें बेचते हुए नजर आ रहा है।

बाहर कैरम बोर्ड्स और बैट बॉल टंगे हुए दिख रहे हैं।

यहां पर काफी अच्छी लाइटनिंग है।

इसमें काफी सारा खाने पीने का सामान और जनरल यूजेस का सामान रखा हुआ है।

फोटो में हमें कुछ लोग दिख रहे हैं।

पानी का झील जो नदी के तौर पे चल रहा--

टॉल के आगे बिस्कुट नमकीन और पानी की बोटल्स रखी हुई हैं।

इस फोटो में हमें एक लाइब्रेरी दिखाई जा रही है।

स्टेज काफी जोर से सजा धजा हुआ है।

अगल बगल कुछ मशीनस बेंचप्रेस और वेट्स रखे हुए दिख रहे हैं।

इस फोटो में हमें एक वूमेन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स दिख रहा है।

यहां पर काफी प्रकार के कपड़े सलवार सूट आदि टॉप्स वगैरा हैं।

इस फोटो में हमें छत पर काफी सारे पेड़ पौधे रखे हुए दिख रहे हैं।

चंद्रमुखी आदि फूल लखे हुए हैं।

जो कि वर्कर्स है और तीन चार लोग जो कि कस्टमर है।

इसमें बहुत सारी चीज़ें रखी हुई है यहां पर हमें कप्स मग्स एंड रूमाल वगैरह दीख रहे हैं।

इस फोटो में हमें एक बैकयार्ड दिखाया जा रहा है।

तथा हेया पर काफी सारे श्रद्धालु गुरुद्वारा आए हुए हैं।

एक मस्जिद दिखाई जा रही है।

इस फोटो में हमें काफी एंटीक एक कैफे रेस्टोरेंट दिख रहा है।

पर काफी सारे टेबल्स व चेयर्स रखी हुई है।

किसी का बिल बोर्ड लगा हुआ है।

पेड़ इतने घने हैं कि जिनकी डालियां नीचे तक आ रही हैं।